कॉलेज है कॉलेज अ की बिल्डिंग सामने दिख रही है कॉलेज क नाम भी लिखा हुआ है और कुछ स्टूडेंट है जो बैग लटकाए हुए हैं।

सामने ऑटो रिक्शा दिख रहे हैं और ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहा है और ऊपर काम चल रहा है इसका।

लाइटिंग इसकी अच्छी है लाइटिंग यहाँ लाइट जल रहा है और कुछ लिखा हुआ भी है इसमें --

एक छोटा सा तालाब है तालाब मे पानी लबा-लब भरा हुआ है पीछे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

और एक हाथी भी दिख रहा है जिसके दो सूंड है और बड़ी हाथी है।

काफी अंदर लम्बा है ये और बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है लाइटे जल रही है।

और उम जो ए.टी.एम. मशीन है जिस बैंक का उसका उ-ऊपर साइन बोर्ड लगा हुआ है साइन बोर्ड में लाइट जल रही है बैंक का नाम रिफ्लेक्ट कर रहा।

यह सैलून है और सैलून में चेयर लगे हुए है उस डेस्क पे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडेक्ट रखे हुए।

पानी निकल रहा है यहाँ से और आगे जाके इसी तरह का पहाड़ और है उससे पानी निकलते हुए जा रहा है।

कुछ लोग अन्दर जाते हुए दिख रहे है शायद विजिटर होंगे आस-पास में बहुत सारे छोटे-छोटे पेड़-पौधे और फूल दिखाई दे रहे है और ये एक बहुत बड़ा पत्थर का ब्लोक दिखाई दे रहा है।